और ये मस्जिद अच्छी है बोल सकते हैं अच्छी है। यहां का माहौल अच्छा है।

और ये बहुत लगन से किया जाता है क्योकि ये पंधरा अगस्त ही रिपब्लिक डे कहती है।

लेडीज सब है नज़र आ रही है प्रॉपर हर्षोउल्लास के साथ पूजा किया जा रहा है। इसमे सारे फल सब चढ़ाए जाते हैं।